यहां पे बेंच है जोकि लोहे के मदद से बनाया गया है जिसपे ब्लू हल्का कलर का कलर किएं गए है।

है और यहां पे एक व्यक्ति है जो पैसा गिनते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके हाथ में एक कड़ा भी है।

और पीछे एक बहोत सारे कुरकुरे लेज टंगे हुए हैं।

और यहां पे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं दूध डालते हुए जो वाइट कलर का शर्ट पहने हुए हैं और ब्लैक कलर का पैंट ।

और पीछे एक पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं खिड़की की मदद से बनाया गया है एक ठो।

तथा सामने में एक पेंटिंग दिखाई दे रहा है जो रंगबिरंगे कलर का है जैसे ग्रीन रेड और ब्लू कलर का है।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

यहां पे लाइट जलते हुए दिखाई दे रहा पेड़ पे परछाई आ रहा है।

यह एक कपड़े दुकान के बाहर का दृश्य है तथा यहां पे ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड है जिसके ऊपर अपनी पसंद लिखा हुआ है।

यह एक होटल के अंदर का दृश्य है जिसके अंदर बहुत सारे लाइट लगे है ऊपर मे जो व्हाइट कलर का है।

और ग्लास वगैरा रखे हैं जोकि स्टील की मदद से बनाया गया है।

पीछे बहुत सारे बड़े बड़े छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे जो ग्रीन कलर के हैं और ब्राउन --